एक मुर्गी भी है और आस-पास कुछ पेड़ भी लगे हुए हैं।

यहाँ चाय कॉफी व कोल्ड्रिंक मिलती है।

सड़क के पास हरे रंग के खेत हैं।